एक गैलरी टाइप की बनी है जिसमें कुछ स्टूल रखे हुए हैं।

और यहां पे पास में कुछ एलोवेरा का पेड़ लगा हुआ है बड़ा सा और एक पत्थर की चट्टान सी दिख रही है यहां पर।

और बुट्टे रखे हैं और जिनके पीछे कुछ बाल वगैरह लगी हुई हैं।

जो कि पत्थरों के सिला के द्वारा बना हुआ है और जिसके --

और यहां पेड़ लगे हुए हैं आसपास में।

आ अ उसमें से पानी गिर रहा है एक ल लाइट लैंप लगा हुआ है लाइट जल रही है जिसमें से --

चिका कंटेनर है जो की ब्लू कलर का कंटेनर है एक लड़का रखे हुए है।

यहां पर एक स्टेडियम है जो कि मिनी स्टेडियम है।

और गुफा के अंदर कुछ लोग जाते हुए दिख रहे हैं और यहां पर छोटे-छोटे पत्थर भी रखे हुए हैं गुफा के सामने।

और यहां पर एक एक जेंट्स खड़े हुए हैं जिन्होंने पैंट टीशर्ट पहना हुआ है गले में --

और यहां पर कुछ बिजली के खंबे वगैरह लगे हुए हैं लाइट वाले ल लगे।

और उसके किनारे से छोट --

और अर रस्ते पर कुछ पानी भरा हुआ है गड्डो में--

यहाँ पर एक प्ले ग्राउंड है और जिसमे बोहत सारे लोग है जो बच--

पीला कलर है और एक बाइक खड़ी हुई है।

और ये लोडिंग टेंपो में कुछ यहां पर मशीन टाइप की रखी हुई है जो कि रेड कलर की है और --

जिसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं और रोड के उस साइड एक बड़ा दीवार है जिसका एक गेट बना हुआ है।

यहां पर एक ग्राउंड है।

यहां पर एक झरना है झरने से पानी गिर रहा है ऊपर से बहुत हाइट से पानी गिर रहा है नीचे की साइड में।

यहां पर दुर्गा जी की मूर्तियां हैं।

और कुछ दो-तीन लेडी लेडीज हैं जो कि माता जी के पेयर पड़ रही हैं यहां पर स्टेज पर।

यह पर एक शादी का प्रोग्राम चल रहा है शादी का फैशन है।

और केंद्रीय विद्यालय के बहार एक बड़ा सा--

एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है और जो कि लोहे का गेट लगा हुआ है कुछ लोग यहां पर खड़े हुए हैं।

और जिसके बाहर कुछ मैदान है जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हैं जो कि लाइन से पेड़ लगे हुए हैं।

हैं पास में खड़े हुई टिकी हुई है।

पे एक जेंस है जो कि शर्ट पर प्रेस कर रहे हैं और --

और यहाँ पर बहुत सारी फूलों की माला है जो कि कुछ वाइट कलर के फूलों की माला बनी हुई है कुछ रेड कलर के --